ये एक थेरेपी सेंटर है। थेरेपी सेंटर में एक अंकल लेटे हुए हैं जो चेक्स वाली ग्रीन कलर की शर्ट पहने हुए हैं और यहाॅं पे एक पिलो कवर रखा हुआ है। वह उस पे लेटे हुए है।

एक यहाँ पे लोग रंगोली बना रहे हैं रंगोली जमीन पर बना रहे हैं और एक अंकल ग्रीन कलर की रंगोली बना रहे हैं उनके वो ब्लैक व्हाइट कलर के प्लेट में ग्रीन कलर का कलर रखा हुआ है वह रंगोली बना रहे हैं ए --